घर के सामने में अलग घर बनाते हुए दिखाई दे रहा है।

बाहर में ईटा और गिट्टी बालू लोग रखे दिखाई दे रहा है।

और बाहर में एक स्कूटी भी रखा हुआ है।

ओ दुकान में चार इंसान दिखाई दे रहा है।

चर्च के अंदर बहुत सारा इंसान लोग चेयर में बैठके दिखाई दे रहा है।

घर के अंदर जाते हुए दिखाई दे रहा है।

काउंटर मे बहुत सारा वाइन बॉटल भी दिखाई दे रहा है।

ग्लास लुक भी दिखाई दे रहा है।

और वॉल में स्विच बॉक्स भी दिखाई मिल रहे है अंदर में लाइट भी जलते हुए दिखाई दे रहे है और ऊपर में ए_सी भी लगा के--

और दूसरे रूम के बाहर एक ब्लू कलर का डोर मैट भी दिखाई दे रहा है।

इस पिक्चर में एक रुम का अंदर दिखाई दे रहे हैं रुम के अन्दर टेबल में व्हाइट कपड़ा बिछाकर रखा हुआ है।

टेबल के ऊपर में कुछ पेपर लोग भी रखा हुआ है।

पीछे का वॉल में एक्सेप्शनल ड्युरेबिलिटी लिख के मिल रहा है।

सामने में एक रेड बोर्ड भी लगा के रखा हुआ है।

और सामने मिट्टी में गिट्टी भी दिखाई दे रहा है।

और पीछे में बड़ा गच्चे लोग भी दिखाई दे रहा है।

नीचे फ्लोर कुछ कार्टून बॉक्स में रखा हुआ है।

सामने में एक ब्लैक कलर का एक गेट भी दिखाई दे रहा है।

इस पिक्चर में एक शोरूम दिख रहा है शोरूम के अंदर में दो रेफ्रिजरेटर रखा हुआ है।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

टॉर्च लाइट भी रखा हुआ है और सारा अलग का कार्टून बॉक्स लोग दिखाई दे रहा है।

रस्ता में एक आदमी स्कूटी पर चलते हुए भी दिखाई दे रहा है।

बिल्डिंग के छत में एक झंडा लगाकर दिखाई दे रहे हैं।

इस पिक्चर में रेस्टोरेंट रूम दिखाई दे रहा है।

सामने में एक काउंटर दिखाई दे रहा है काउंटर में भी एक लड़की बैठा हुआ है।

में एक टी_वी भी चलते हुए दिखाई दे रहा है।

नीचे में अलग बिल्डिंग भी दिखाई दे रहा है।

इस पिक्चर में वाटर पार्क दिखाई दे रहे है बहोत सारा इंसान लोग पार्क में खेलते हुए दिखाई मिल रहा है।

इस पिक्चर में फर्नीचर का शोरूम दिखाई दे रहे हैं।

इसके ऊपर में चलके दिखाई दे रहा है।

इसको पार करके घर भी दिखाई मिल रहा है।

हॉल में बहुत सारा स्क्रीन भी जलते हुए दिखाई दे रहा है।

और सामने दो इंसान गाड़ी को बनाते हुए दिखाई दे रहा है।

टेबल के सामने में दो लड़की बच्चा और एक लड़का दिखाई दे रहा है।

इस पिक्चर में ऑफिस का रूम दिखाई दे रहे हैं सामने में एक टेबल भी दिखाई दे रहा है।

बिल्डिंग का बाहर में बहोत सारा ऑटो रिक्शा दिखाई दे रहा है।